जो कि बोहोत ही सुंदर लग रहा है।

सभी औरतें छठ पूजा कर रही हैं। यह सभी यहां पूजा करने आई हुई है ।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

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां एक टेबल रखा हुआ है।

इस राशन दुकान में तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहां बड़े से दरवाजे लगे हुए है ।

यहां बहुत से मिर्चा रखा हुआ है|